ये भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का बैंक है जिसमे पैसे निकासी किए जाते है ये जमा बाजार --

ये बहुत बड़ा मंदिर है जिसमें ग्रिल का आप केवाड़ी लगा हुआ है बहुत सुन्दर इसका डिजाइन है ऊपर में भारत का --

ये बहुत सुंदर बगीचा है इसमे बहुत हरे-हरे पत्ते हैं हरे-हरे बगीचे है इसमे दो आदमी है काम कर रहा है घास बहुत सुंदर देखने में लग रहा है बहुत अच्छा है।

ये बहुत सुन्दर भगवान के मूर्ति लगे हुए है ये मंदिर बने हुए हैं इसमें फूल बहुत सारे लगे हुए हैं बहुत सुंदर गुलाब का फूल है।

आदमी खड़े हैं इसमें बैठने के लिए बहुत सारे बिजली के खम्बे लगे हुए हैं यह बहुत सुंदर देखने में लग रहा है बहुत अच्छा है।

ये सरकारी स्कूल है इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं कलम-कोपी लेके चित्रकला दिखा रहे हैं बहुत सारे लड़की है।

कागज बहुत सारे रखे हुए है ये बिल्डिंग बहुत बड़े एवं बहुत सुंदर देखने में लग रहा है।

लाइट बहुत बड़े-बड़े लगे हुए हैं बहुत सुंदर देखने में लग रहा है।

रंग का बैलून लगे हुए हैं। कुर्सी लगे हुए हैं । बोतल बहुत सारे रखे हुए हैं। बहुत सुंदर देखने में लग --